और बहुत ही साफ़-सफाई के --

एक दुकान सेमसन का बोर्ड लगा गए हुआ है दूसरा एकसाइड बटेरी --

हे म बजार बहुत ही बड़े हैं यहाँ लोग समान लेने आते --

सभी ने गाँधी जी का टोपी माथे में लगाए हुए है।

इस नाव से सवारी इस पार --

रेडीमेड सभी कपड़ा यहाँ बहुत अच्छे दाम पर देते हैं यह दुकानदार बहुत ही अच्छे हैं बहुत सारे लो --

यहाँ कोई कार्जकरम है।

काफी अच्छा किया गया है।

जो अलग-अलग दुकान किये हुए है।

ओपिस के बहार एक बाइक खड़े हैं।

यह एक काम्प्लेक्स है यह काम्प्लेक्स --

यह काम्प्लेक्स में बहुत सारे लोग आते-जाते रहते हैं यह काम्प्लेक्स बहुत ही अच्छा --

काम प्लस्तर हो रहा है निचे में एक दुकान भी खोले गए हैं जिसमे --

अभी नया बना है हुवा है।